रिक्शा नए जैसा दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है और आगे साइड पीले रंग जैसा सीसा --

यह तस्वीर किसी विद्यालय के गेट जैसे दिखाई दे रही है।

जो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है कुर्सी का रंग --

तस्वीर में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जोकि बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

दो लोग कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।